इस गेट पर प्रवेश निषेध लिखा हुआ हैं।

यह बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

जिस पर बहोत सारे बटन बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और अंदर कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कार खड़ी हैं जिसके पास दो लोग खड़े दिख रहे हैं।

आदमी और महिलाएं दोनों काम कर रहे दिख रहे हैं।

यह फोटो कंस्ट्रक्शन की दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ मशीनें रखी हुई हैं।

तीन चार दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक कार स्पा की शॉप का फोटो लिया गया है।

जिसमें कार को बहोत अच्छा और सुंदर बना दिया जाता है।